सामान रखे हुए है दुकान पर ठेले पर पोस्टर भी लगे हुए है।

नीचे एकित जिम का हॉल है जिसमे जिम का सामान रखा हुआ है काफी सारी पड़ी--

इसके बाहर ट्रोली रखी हुई है जिसमे लोग सामान लाते है सुपर मार्केट के आगे काफी लाइट लगी हुई है सुपर म्म--

यह एक योगा आं की अह क्लास है जिसमे काफी सारे योगा करने के--

क्लास की विंडो से एह रोशनी आ रही है इसमे ए_सी भी लग रहे है।

जिम का गेट खुला हुआ है जिम मे लाईटे लग रही है जिम --

जे एक जिम का हम्म रूम हम्म नै हॉल है जिसमे जिम के इंस्ट्रूमेंट सामान रखे हुए है।

तिरंगे के तरह पुते हुई है इसके अ सामने दो पेड़ लगी हुए है बैठने के लिए पट्टी की व्यवस--

जे एक व्यक्ति है जो जिम कर रहा है। जेएक जिम रूम है।